और यहां पर लाइट य भी लगी हुई है जो काफी अच्छी है और यहां पर--

यहां पर बहुत सारी कन्याएं दिखाई दे रही हैं जो योगा कर रही है ।

और होट भी दिखाई दे रही है और एक पिंक कलर भी दिखाई दे रहा है ।

और किसी लड़की ने पीले कलर का बलियान पहना हुआ है।

समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा खाना है एक फूल सा भी दिखाई दे रहा है ।

और एक टिक्की टाइप की दिखाई दे रहीऔर चटनी भी दिखाई दे रही है।

जो योगा कर रहे हैं और इसमें कुछ बड़े लोग भी हैं और कुछ छोटे बच्चे भी--

यहां आप देख रहे हैं एक शादी समारोह है ये रात का सीन है जहां पर--

और यहां पर दो लड़के भी बैठे हुए हैं और बड़े वाली लाइट भी लगी हुई है।

और एक वाइट कलर की लाइट भी लगी हुई ब्लू कलर की भी रेड कलर की भी और पीली कलर की भी--

यहां आप देख रहे हैं एक दुकान है जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं और कुछ सैंड भी रखे हुए है ।

जिम करते हुए नजर आ रहे हैं और हरा कलर का इसमें वो भी लगा हुआ है जो हरा दिखाई--

जैसे पेंटिंग में बनाते हैं और एक देवी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

और एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर का गच्छा पहना हुआ है ।

दूसरा लड़का है जिसने ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ है और ये जिम करने के लिए आए हुए हैं और यहां पर बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं।

यहां पर एक लड़की दिखाई दे रही है जो डांस कर रही है ।

और उधर दूसरी तरफ भी एक मुर्गा दिखाई दे रहा है ब्लैक है।

और कुछ भगव रंग का है और यहां पर देख रहे हैं आप--

इन्होने एलिमेंट पहना हुआ है पीले कलर का और यहां पर ये सर्दियों का है।

और नीचे कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं और कुछ बहुत सारे सरिए भी दिखाई हुए है।

और ये बहुत अच्छी है कुछ टेनिस की है कुछ वैसी लोहे वाली है ।

मे एक पैर पानी में है एक उठा रखा है जो पीले कलर का है।

यहां पर ये मछली ढूंढ रहा है ये मछली क्योंकि ये भूखा होगा तो ये मछली खाएगा ।

और उधर आप देख रहे हैं एक पेड़ भी लगा हुआ है जो हरा भरा ह--

जो काफी अच्छा नजर आ रहा है और एक टेबल भी पड़ी हुई है और धूप में यहां आप सेक भी सकते हैं और आप यहां पानी में इसमें नाहां भी सकते हैं जो काफी अच्छा पानी--

और यहां पर आप देख रहे हैं एक मस्जिद है जिसमें कुछ वाइट कलर हुआ है और कुछ हरा कलर हुआ --

और नीचे एक टीन का पड़ा हुआ है जो ब्लैक कलर का है ।

ब्लू कलर की ब्लैक पेंट एक दूसरा लड़का है जिसने वाइट कलर की शल्ट पहनी हुई --

और एक तरफ एच_डी_एक्स डीलक्स खड़ी हुई है और यहां पर ए_सी भी लगे हुए--

कुछ वाइट कलर की है फूल उसमें और कुछ रेड कलर केह--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

व् उसमे बहुत सारे कलर है हरा कलर का पीला कलर का--

हारा भी है पीला भी है लाल भी है ।

कुछओ औ रे वाइट कलर का है और कुछ रेड कलर का भी --

नीचे बहुत बड़ा वो रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है ऑल ब्लू है ।

अभी अच्छी लग रही है जिन पर आप रेसिंग कर सकते हैं ये डिजिटल --

यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ छोटा छोटा घास भी नजर आ रहा है जो हरे कलर का--

ये ए वन एन_जे_बी_ए पार्लर है यहां पर आप देख रहे--

और एक और दूसरी दुकान है माँ सीता की जहाँ पर कुछ पंखे रखे हुए हैं।

चौराहा है खाली है और एक पल्सर गाड़ी खड़ी हुई है जो ब्लैक कलर की है।

साईकल भी खड़ी हुई है एक साईकल ब्लैक कलर की है दूसरी--

हुआ है एक लीला बोर्ड लिखा हुआ है और व्हाइट कलर में लिखा हुआ है।

जो व्हाइट कलर की है कुछ चॉकलेटी कलर किया है और एक जिन्ना भी बना हुआ--

लिखा हुआ है श्री जंग रोधक सीमेंट और जंग की--

यहाँ पर हम देख रहे हैं दो तीन टेबल पड़ी हुई है।

और कुछ कुर्सियां पड़ी है कुछ टेबल पड़ी हुई है जो ब्लू कलर की है कुछ रेड कलर की है और ये काका ढाबा है मोछ मरोड़ दाल फ्राई --

ये बहोत ही लंबे आकार में बनाया हुआ है और ये काफी अच्छा लग रहा है।

एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और ये सर्दी का टाइम है।

सामान खरीदने के लिए खड़ा हुआ है और एक शीशा भी दिखाई दे रहा है जो--

यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दुकान है दुकान में कुछ सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।